जिस पर खनु वैन का बोर्ड भी लगा है एक ग्रीन-ग्रीन प्लांट भी दिख रहे है पीछे एक खम्भा भी दिख रहा है बिजली का।

सामने एक दुकान भी रखी है जहा कुरकुरे भी र रखे है। एक रैक भी रखा हुआ है और ये उम बाइक भी रखी हुई है एक।

और ये टालस भी लगा हुआ है। नीचे सामने एक डब्बा सा भी रखा दिखाई दे रहा है और एक पैशन प्रो का बोर्ड भी लगा हुआ है। ए बाइक भी बहुत बढ़िया--